यहां पर एक बड़ा सा रथ है उसके आगे दो घोड़े हैं।

यहां पे पंखे वगैरह लगे हुए हैं ऊपर छप्पर पड़ा हुआ है।

ये ढाबा है इसके पड़ोस में एक बड़ा सा फ्रिज रखा हुआ है और फ्रिज में बहोत सारी पेप्सी वगैरा लगी हुई है।

ये लिखा है अंगम ढाबा और और यहां पे ये इसका चैनल शटर बंद हुआ हुआ है।

एक ऑफिस है यहां पर रेड कलर की मेज पड़ी हुई है बहुत लंबी सी।

और यहां पे कुछ रेड कलर की मछली हैं कुछ ब्लैक कलर की हैं।

ये चौराहा है यहां पे बहुत सारे आदमी टहलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

यहां पे लोहे की पाइपे बिछाई गई हुई सरिया और यहां उसके ऊपर से मिट्टी डाली जा रही है।

ये एक ब्यूटी पार्लर है यहां पे दो तीन लहंगे रखे हुए हैं और मेकअप का सारा सामान रखा हुआ है।

एक लहंगा लाल है और एक लहंगा नीला हौ है और यहां पे बोहोत सारी ज्वेलरी वगैरा रखी हुई हैं।